के सामने काफी बड़ी बिल्डिंग है जिस पर कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

और काफी सारे भगवान की तस्वीरे रखी हुई है चार्जर लगा --

जोकि काफी बड़ी शॉप है जिसके पास एक और एक शॉप है।

ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है जिसमें काफी सारी लाइट्स लगी हुई है।

आस पास बड़े बड़े पड़े है काफी सारे--

ये एक शॉप है जो कि वो दिख रा जिसके दरवाजे पर काफी सारे--

जिसके ऊपर काफी सारी लाइट्स लगी हुईं हैं।

जिसके पास काफी सारी चोट लगी हुई है गेट पर काफी सारी डेकोरेशन की गई है।

जिसमें चौक बाहर आलू रखे है।